पकोड़े बने हुए रखे दिखाई दे रहे हैं और वहाँ कुछ सलाद --

छोटा सा वृक्ष है। लगा हुआ नजर आ रहा है और यह दिन का समय है। आसमान दिखाई दे रहा है। धूप निकली हुई है।

सामने रोड भी लगी है और वह का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ दिख रहा है और ये दिन का समय है धूप निकली हुई है ।